यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे सामने मकान भी दिखाई दे --

यह प्लेग्राउंड है यहाँ पर-र-र ग्रीन कलर की अ रेड कलर की नेट बिछी हुई है।

यह झाँसी की रानी चोराह है यहाँ पर झाँसी की रानी की मूर्ति है और ये यहाँ उसकी बाउण्ड्री दिखाई दे रही है सामने कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ मेला दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ रेड कलर की कुर्सियां बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मिकी माउस झूला भी दिखाई दे रहा है सामने कुछ मकान भी दिखाई दे रहा है।

यह गाड़ी साफ करने की दुकान है यहां पर वाइट कलर एंड वाइट एंड ब्लेक कलर की कार है जिसकी सफाई की जा रही है यहाँ --

और यहाँ पर रोड भी है सामने बेंगनी आसमानी और सफेद से कलर के बदल दिखाई दे रहे हैं।